यह दृश्य एक नदी का है जिसमे तेराक अपनी नाव पे बैठके नाव चला रहे हैं।

यह दृश्य एक क्लासरूम का है जिसमे तीन रो मे बहुत सारी बेंच और डेस्क लगी हुई है।

और अपनी कला कृतियां बना रहे है।